एक बहुत बड़ा पेड़ है सामने एक पहाड़ है।

यह बहुत अच्छी घर है ऊपर में तीन खिड़की है बगल में खिजुर का पेड़ है।

यह वाइट कलर का दीवाल है। उसके ऊपर नेम प्लेट रेड कलर का लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारी लड़कियां हैंउसके बगल मे एक ए_सी हैजो ए_सी व्हाइट कलर का है और पंखा लगा हुआ है।

बगल में हरे-भरे पौधे है बहुत सारे।

सामने तीन आदमी बैठा है एक पिंक कलर का टी सर्ट पहना है।

बीच में एक का रोड है जो कि बहुत लंबा है सामने बहुत हरा भरा पेड़ है।

सामने शीशा का टेबुल है उसके ऊपर बिस्किट रखा हुआ है।

यह एक मस्जिद है जिसमे बहुत सारे आदमी है जोकि वाइट कपड़ा और वाइट टोपी में हैं।

एक सामने औरत खड़ा है जो पिंक कलर की शर्ट पहनी है।

मंदिर के ऊपर लोहा को कोई स्टिक लगा हुआ है जो की बहुत अच्छी है।

सामने एक कैमरा लगा हुआ है जो की बहुत व्हाइट कलर का है।

फिर रंग बिरंगे के पर्दे लगा हुआ है।

सामने बैठने का कुर्सी है और एक सामने एक लड़का है जो वाइट कलर का सर्ट पहना है।